तस्वीर में दो लड़का दिखाई दे रहा है।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

जिम के अंदर में दो फैन दिखाई दे रहा है।

एक यलो कलर का कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

और एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक थर्माकोल बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहोत सारा एप्पल दिखाई दे रहा है।

एक ब्लैक कलर का पौलीथीन भी दिखायी दे रहा है।

दो तीन ठो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहोत सारा फ्लॉवर भी दिखाई दे रहा हैं।

रूम का अंदर में बहुत सारा लाइट दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहा है।

साइड में एक फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा फूल माला भी है।

एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

एक वॉल भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में चेयर भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहुत सारा लॉन्ग पेंट दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में दो लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

एक ग्रीन कलर का सोफा भी दिखाई दे रहा है।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

वॉल में बहुत सारा पोस्टर भी चिपका के दिखाई दे रहा है।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

तस्वीर में एक बास दिखाई दे रहा है।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

और पीछे में सफेद कलर का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा शैंपू भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा लोहा भी दिखाई दे रहा है।